चेयर लगी है और उसपे बहुत साड़े आदमी बैठे हैं।

दिखाई दे रही है जो कि बाहर के बीचों बीच--

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिखाई दे रही है जो कि पहाड़ के बीच में--

एक आदमी बैग लेके खड़ा है।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

और इसी के पीछे अंधेरा है।

इस फोटो में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है।

और टेबल के ऊपर दो गिलास और एक पानी की बॉटल भी है।

जो की जाली के ऊपर दो बच्चा जाली को पकड़ कर खरा है।

जो की मछली के बगल में तीन चार लोग बैठ के मछली को काट रहा है।

इस तस्वीर में मुझे गैरेज दिखाई दे रही है।

और ढाबे के पीछे पहाड़ है।

इस तस्वीर में मुझे साई जनरल स्टोर दिखाई दे रही है।

जो की स्टोर के अंदर चिप्स कुरकुरे है और अंदर के तरफ एक--

इस तस्वीर में मुझे जंगल दिखाई दे रही है।

जो कि पार्क के गेट पे एक बोर्ड है।